रायगढ़ का महाविद्यालय और यह बिल्डिंग है ओ पिले कलर मे पुती हुई है बोर्ड दिख रहा होगा और ये एक गेट है।

ब्लैक और पिले से और ए झाली दिख रही होगी आपको इसके यहाँ घास है और पेड़ भी लगे हुए है ओर पीछे बिल्डिंग भी है और ये बस खड़ी--

आपको दिख रही होगी एक रोड गयू है और बिल्डिंग बनी है और यहाँ आजु-बाजु कित्ती घास लगी है और यहाँ बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे होंगे आपको ग्रीन कलर में।